एक गमला भी है जो ब्राऊन कलर का है उसके बगल में एक छोटा साइकल भी लगा हुआ है।

यहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग भी जोकि वाइट एंड क्रीम कलर का है।

यहां पे बहुत सारे कान का झुमका भी लगे हुए हैं और यहां पे जिलेट गार्ड का मशीन भी लगा हुआ है।

ब्राउन कलर का कुछ लटका हुआ है यहां पर गुलाब और बहुत सारे गेंदा का फूल लटके हुए है।

यहाँ बहोत सारे बच्चियाँ और लड़के खड़े हैं जो वाइट कलर का सूट पहने और वाइट कलर का कुर्ता पहने और वाइट कलर का शर्ट पहने खड़ा है।

एक आदमी उसको छींट रहा है एक चेक चेक शर्ट पहने है।

यह एक दुकान का बाहर का दृश्य है जहां पे एक बैनर पर ट्रक ड्राइविंग स्कूल लिखा हुआ है।

यहां पे दो बेड है इस पे एक औरत एक जेंट्स लेटे हुए हैं।

यहां पे एक बोर्ड पे पावर लिखा हुआ है और जगलेटर का फोटो चिपकाया हुआ है।

रेलिंग भी दिख रहा है और एक बहुत बड़ा पेड़ भी है।

उसके नीचे बहुत सारे बाइक लगे हुए हैं और बाइक पे आदमी लोग बैठा हुआ है।

ग्रीन कलर का कालीन बिछा हुआ है तथा यहां पे दो तीन चार पोस्टर भी चिपकाए हुए हैं।

वहां पे एक वाइट कलर का उलजीम ब्लैक कलर बैनर भी लगा हुआ है।

एक पीला कलर का बलून भी है और एक ऑरेंज कलर का बलून लगा हुआ है।

यह एक फूल दुकान का दृश्य है जहां पर एक बैनर पे प्रेम लिखा हुआ है।

बहुत सारे बांस भी बांधे हुए हैं जोकि रस्सी से बांधे हुए हैं।

यहां पे पार्किंग का एरिया भी लगा हुआ है यहां पे ब्लैक कलर का रोड पे कुछ गिरा हुआ है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है जो कि ब्लैक कलर का कोट पहने खड़ा है।

बहोत सारे नल है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का।

यह एक सिंगिंग क्लास का दृश्य है यहाँ पे एक लड़का लाल कलर का कोट पहने और ऑरेंज कलर का शर्ट पहने खड़ा है हाथ में माइक लिए खड़ा है।

एक ऑरेंज और लाल कलर का कालीन बिछा हुआ है।

यह एक डाउन फ्लोर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे छड़ लगे हुए हैं और रसिया लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे बोड़े भी रखे हुए हैं जो की सीमेंटेड है।

यहां पर एक लाल कलर का चप्पल भी है और एक बांस भी है।

दो गाड़ी भी लगे हैं एक टेंपो भी लगा हुआ है।

एक रोड का दृश्य है यहां पे बहुत बड़ा रोड है और रोड के बाहर बहुत सारा मिट्टी दिख रहे है।

दो बैनर दिख रहा है जो ब्लू कलर का है तथा यहां लाल कलर का एक बैनर भी है।

लकड़ी से कुछ बनाया हुआ है लकड़ी के ऊपर व्हाइट कलर से कुछ चिपकाया हुआ है व्हाइट कागज।